एक मैदान है जिसमें घोड़े हैं चार पांच चलर--

दो तीन जेंस है और एक लेडीज है और घोड़े के दुम को पकड़े है और पीछे के साइड में --

ये चर्च है चर्च में बहुत सारी बैठने की सीटें लगी हैं।

और उसे टेबल के पास एक पोस्टर लगी हुई है और पास में बैठने की चेयर है जिस पर एक लेडिज बैठी हुई है।

पंखे भी है और लाइटें भी लगी हुई है।

ये बहुत बड़ा सा एक पहाड़ पत्थर दिख रहा है पत्थर पे --

और उसके पास मे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और अंदर की ओर बांस बनने हैं और साइड में बहुत सारी पेड़ झाड़ियाँ--

ये घर बन रही है घर के ऊपर में--

गिट्टी और ईंटे रखी हुई हैं।

चार पाँच नारियल की पेरे हैं और एक --

पास में कुछ मकाने बनी हुई हैं जहां पे हरे रंग के पर्दे लगे हैं।

और गैस की मशीन रखी हुई है।

और पीछे के साइड केल केले के पेड़ दिख रहे है और बहोत लोग--

ये शोरूम है जहाँ पे फ्रीीज वाशिंग मशीन टी_वी --

ये कोई स्टेडियम है जहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहे हरे भरे से घास है और कुछ पिलरें खड़ी हैं और बड़ी सी फ्लैट दिख रही है।

ये बुक की स्टोर है बुक की दुकानें हैं दो दुकानें लगी हुई हैं बुक की जहाँ पे दो आदमी बैठे हैं।

ये दुकान है जहाँ पे शहनाज हुसैन की फेशियल किट रखी हुई है और मिरर दिख रही है और एक गोल्ड की --

दुकान में बहुत सारे सामानें दिख रही हैं मेट्रो ड्राई क्लीनर और वहाँ पे एक पिलर भी खड़ा है और काँच की --

और ब्लू ब्लू कलर की दिवाले हैं।

ये बुक के स्टोर है जहाँ पे बहुत सारे अलमीरे में बुक रखी हुई है और एक आदमी --

खरा है ऊपर में लाइट लगी--

एक फ्लैट है फ्लैट के आगे में गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई है और दो तीन लेडीसे खड़ी हैं।

बड़ी सी बिल्डिंग फ्लैट है जिसमें काँच लगी है।

हरी भरी सी जंगलें हैं दूसरी साइड में नदी है और पूल पे बहुत सारे लोग खरे हैं और बड़ी बड़ी सी --

ये किसी चिज की गोडाउन है जहां पर बहुत सारे गट्टे रखे हुई हैं सामान हैं और चेयर देख रहीं है।

और एक खंबे सी है और एक लाइट भी लगी हुई है।

कान्हा जी की मंदिर है जहाँ पे --

ये छोटा सा होटल दिख रहा है जहाँ पे दो तीन टेबल और चेयर रखी हुई है नैपकिन है सॉस की बोतल है लाइटें हैं और --

सामुदायिक स्वस्थ केंद्र झाड़ा झज्झड़ की एक --

और गेट के बाहर में एक जनरेटर है लाल रंग की और दो तीन बाइके खड़ी हैं।

ये कोई कंपनी है कंपनी के बाहर में जो दो तिरंगे लगे हुए हैं और गार्डन भी है और बिल्डिंग में--

एक चर्च है जहाँ पे बहुत सारे लोग लेडीज और जेंट्स खड़े हैं।

ये चर्च है चर्च के बाहर में बहुत सारे लोग देख रहे हैं और चर्च को गुब्बारे से सजाए हुए हैं।